अंब्रेला के नीचे बैलून से सजाया हुआ है।

और इसमें सामने एक महिला और एक पुरुष को भी दिखाई दे रहा रही है।

और इस कमरे में बहुत सारा लाइट भी दिखाई दे जा रही है और पंखे भी दिखाई दे जा रही है।

तीन इंसान खड़ा हुआ है और इसके आजू बाजू तीन चार पेर दिखाई दे जा रही है।

इसमें येलो कलर से पूरा सजाया हुआ है।